ये लाइन खींची हुई है वाइट कलर से चूने से।

ये एक रोड टाइप का दिखाई दे रहा है।

ये एक ग्राउंड टाइप का दिखाई दे रहा है जिस ग्राउंड में बहुत सारे चेयर --

टेंट लगा हुआ है | बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं | बादल दि --

उम्म मग्गे दिखाई दे रहा है काटून रखा हुआ --

त तसली रखी हैं दो कुछ सामान रखा हुआ है।

बिल्डिंग में येलो कलर पुत रहा है और --

के भिंडी रखी है सकरकंद रखे हुए हैं रखी हुई है।

ब्लैक कलर दिख रहा है | ब्लैक वाइट कलर दिख रहा है |

कार खड़ी हुई गाड़ियाँ खड़ी हुई है |

एक मकान दिखाई दे रहा है जिस मकान में --

में बंधे लाइटें लगी हुई है वाइट कलर की मीटर लगा हुआ है सामने।

ये बादल दिखाई देना है ब्लैक --

दियें दिखाई दे रही हैं।

कुछ तितलियाँ दिखाई दे रहे है जो --

बिंदु में विंडो दिखाई दे रही है लाइट --

एक पेट्रोल टैंक दिखाई दे रहा है ।

टर खड़ा हुआ है ऑटो खड़ा हुआ है लाइट जल रही है उसमे |

बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं इधर साइड में साधन भी दिख --

छत पे एक जेंट्स खड़ा हुआ है ।

जो राष्ट्रीय ध्वज वाला तिरंगा लहरा रहा है।

ग्रीन कलर के पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी खड़ी हुई है एक जेंट्स खड़ा हुआ है मकान के नीचे वो छत पे कुछ देख रहा है ।

पंखे लगे हुए है व्हाइट कलर के कुछ गुलदस्ते भी दिखाई दे रहे है।

यह मंदिर में बहुत सारे कलर पुत्ते हुए --

कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ बैठे हैं एक लड़की चल रही है।